और एक मयूर जग भी रखा हुआ--

और यहाँ दो तीन चार आदमी भी बैठे हुए है।

और घास भी दिखाई दे री है।

बहोत सारे डिब्बे सीब्बे है नजर आ रहे हैं।

यह एक नाई की दुकान दिखाई दे रही है।